और इसके पीछे बिल्डिंग के पीछे घास लगी हुई है और जिसके चारों तरफ चार दिवारी कर के अंदर लोहे की रेलिंग बनाई हुई है और उसके पिलर है जो --

महिला या फिर एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं और एक भाई साहब इधर खड़े हुए हैं नीचे सीधा समतल फर्श डाला हुआ है।

जोकि व्हाइट है और पिल्लरों के सारे उसके आगे एक झज्झर भी बना हुआ है उसके ऊपर एम पी एस नाम भी लिखा हुआ है और उसका जो फर्श है वो --

देवता के चढ़ावा चढ़ाया हुआ है यहां पे एक र रलकिया रखा हुआ है एक दान पेटी भी यहां पे रखा हुआ है और एक महा शिवजी की यहां पे फोटो लगा रखी है।

जिसमें कांच का गेट लगा हुआ है और उसमें--

दो साइकिल भी वहां पे है और कुछ टैक्सी भी यहां पे पार्क की हुई है उसमें कुछ यात्री उतर रहे हैं कुछ चढ़ रहे है।

यहां पर एक पुल बना हुआ है जिसके चारों तरफ पानी है और उधर दूर पेड़ लगे हुए हैं ये पुल है जिसमें साइड में लोहो की रेलिंग लगी हुई है।

छोटी छोटी चार पांच खिड़कियां एक बड़ा सा गेट है उस गेट के आगे एक दीवार बनी हुई है जिसमें एक लोह का छोटा सा गेट आने जाने के लिए है।

छोटे छोटे चित्रकारी करके कुछ टंगाए हुए हैं और जो कि रेड कलर गुलाबी कलर पीले कलर हरे कलर के हैं और सफेद कलर के बॉक्सेस बनाए हुए हैं।

और उसके आगे एक ये बड़ा सा पेड़ लगाया हुआ है और इस दीवार के दीवार में एक लाइट लगाई हुई है उसके आगे एक खंभा रोपा हुआ है।

जमीन है और उसमें काफी व्यक्ति खड़े हुए हैं।

काफी सारे प प पौधे लगे हुए हैं यहां पर एक बाइक भी जा रही है और एक बड़ा सा यहां पे बोर्ड लगा हुआ है।

व्हाइट कलर की ये छत है और पीलरों पे वो मकान है और उसके जो पीलर है वो रेड कलर के हैं और यहां पे छोटे छोटे दुकान बनी हुई है उन दुकानों के आगे--

और दो मजदूर है जो कि एक ने ब्लू कलर की और एक ने व्हाइट कलर की टोपी पहन रखी है और साथ में जैकेट भी पहन रखा है।

छतरी बनी हुई है इसके चारों तरफ चौकी बनी हुई है और सीढियाँ बनी हुई है जिसके आस पास में पेड़ पौधे हैं।